लाइंस भी दिखाई दे रहे हैं सामने की तरफ बड़ी सारी बांसें भी दिखाई दे रही हैं।

कई सारे बैलून दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ और भी कई सारे ब्रैंड्स के नाम रखें दिखाई दे रहे हैं।

सामने की तरफ एक शीशा का कबर्ड भी दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर तीन बोटले रखे हुई हैं।

बगल में एक हैंड फैन भी रखा हुआ है।

बहुत सारे ट्रायंगल शेप में कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ रेड लाइट ग्रीन लाइट भी दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ एक टेबल भी दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर उजले रंग का कपड़ा लगा हुआ है।

यह दृश्य एक स्कूल का है।

ग्रिल के आजू बाजू दोनों तरफ--

सामने की तरफ कई सारे बास दिख रहे हैं।

कैमरा भी लगा हुआ है जिसके बगल में एक और पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पे सामने की तरफ एक आकृति भी बनी हुई है।

इस आदमी के आगे एक टेबल लगा हुआ है। सामने की ओर तीन चार चेयर टेबल भी दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में कई सारे ड्रॉवर्स बने हुए हैं।

ऊपर की तरफ कई सारे डब्बे भी रखे हुए हैं।

यह दृश्य एक क्रोकोडाइल का है।

पीछे की तरफ पानी दिखाई दे रहा है जिसके पीछे एक और दीवार दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ कई सारे सीढ़ियां दिखाई दे रही है पीछे की तरफ कई सारे बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

उसे पे एक साइन भी बना हुआ है सामने की तरफ कई सारी दवाईयां भी दिखाई दे रही है।

सामने के तरफ कई एक्वेरियम दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर मछली रखे हुए हैं।

यह दृश्य एक कपड़े के दुकान का है।

ये दृश्य एक सब्जी मंडी का है।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

ऊपर की तरफ एक घर दिखाई दे रहा है सामने की तरफ कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

आदमियों के बगल में दु दुकाने दिखाई दे रही हैं दोनों दुकान के ऊपर एक एक पोस्टर लगा है।

सामने की तरफ बहुत सारी लड़कियां भी दिखाई दे रही--

इस दुकान के अंदर एक और रूम दिखाई दे रहा है।